सामने एक कुर्सी लगाया हुआ है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

दिन का समय हो रहा है नीला आसमान दिख रहा है।

गाय भैंस हैं और बहोत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है।

बेड पे एक रिमोट है उसके बगल में चार्जिंग वाला है।

एयर वायर बहोत सारे टांगे गए हैं शेल्फ बनाए हुए हैं सब शेल्फ में अलग अलग समान है कबड लगाए हुए हैं।

एक घड़ी है सामने और एक भगवान का फोटो भी पीछे टांगा हुआ है।